बड़ा शोरूम है बहुत सारी बाइक यहां पे लगी--

किड्जी लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर स्कूल बहुत ही बड़ा है।

डब्बा लिखा हुआ है और यहां पे डिनर ब्रेकफास्ट और लंच --

अच्छा बना हुआ है डेकोरेशन बहुत उसकी सुंदर की गई है।

प्लांट के साथ कुछ तो रखा गया है काफी सुंदर बनी हुई है।

ये एक बहोत ही सुंदर जगह है जोकि--

बोहोत सारी कार बाइक और स्कूटी पार्क की हुईं हैं और--

ये एक बहोत ही सुंदर और बहोत ही बड़ा कपड़ों का शोरूम है जिसमें बहोत अच्छी ड्रेसेस लगाई हुई है सामने--

लिखा हुआ है और अनिल चोपड़ा मोबाइल नंबर डबल नाइन डबल ऐट फॉर डबल नाइन डबल सेवन --

डांसे लड़कियां कर रही है और सुंदर भी--

दिख रहे हैं उसके साथ एक और लड़का बैठा हुआ है और--

शोरूम बहोत ही बड़ा है बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और काफी अच्छा भी लग रहा--

कंप्यूटर को चला रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे काम कर रही हैं और--